java में numerical डेटाटाइप पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
java में उपलब्ध विभिन्न numerical डेटाटाइप और
numerical data को संचित करने के लिए उनका उपयोग कैसे करें
इस tutorial के लिए हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि eclipse में साधारण java program को कैसे लिखे और रन करें
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई हमारी website पर जाएँ
integers को संचित करने के लिए उपयोगित data type को int कहते हैं
दशमलव संख्या को संचित करने के लिए उपयोगित data type को float कहते हैं
अब परिभाषित करते हैं और पहले integers का उपयोग करते हैं
यहाँ हमारे पास eclipse ide है और बाकि code के लिए आवश्यक skeleton है
हमने एक न्यूमेरिकल डेटा class बनाया है और इसमें main method जोडा है
अब देखें कि संख्या कैसे संचित होती है
int distance equal to 28
यह statement distance name में integer value संचित करता है
distance name को integer variable कहते हैं
अब हम variable distance का उपयोग उसमें संचित value को print करने के लिए करेंगे
system dot out dot println parentheses में distance
यह statement variable distance की value prints करेगा
file को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि value 28 distance में संचित हो गई है और यह printed हो गयी है
अब variable में संचित value को बदलें
28 को 24 में बदलें
सेव और run करें
हम देख सकते हैं कि output उसके अनुसार बदल गया है
int ऋणात्मक values को भी संचित कर सकता है
24 को minus 25 में बदलें
सेव और run करें
हम देख सकते हैं कि int type के variables में ऋणात्मक values भी संचित हो सकती हैं
data type int हमारे अधिकतर programming जरुरत के लिए पर्याप्त है
लेकिन यह values को केवल एक सीमा तक संचित कर सकता है
अब बडी value को संचित करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है
हम देख सकते हैं कि यहाँ संख्या के नीचे red line है जो कि error को दर्शाता है
error message दर्शाता है the number is out of range for a variable of the type int
int memory का 32 bits लेता है और केवल2 power 31 से 2 power 31 तक values संचित कर सकता है
बडी संख्याओं को संचित करने के लिए java long data type प्रदान करता है
अब इसका उपयोग बडी value संचित करने के लिए करें
int को long में बदले और
संख्या के अंत में capital l जोडें
ctrl s के साथ इसे सेव करें
हम देख सकते हैं कि अब यहाँ कोई error नहीं है
ctrl f11 के साथ रन करें value printed हो गई है
हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्याओं को long variable में संचित किया जा सकता है
अब दशमलव संख्या को int variable में संचित करें
long को int में बदलें और संख्या को 235 करें
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ एक error है क्योंकि int केवल integers को संचित कर सकता है
दशमलव संख्याओं को संचित करने के लिए हमें float का उपयोग करना होगा
data type को float में बदलें
और value के and में एक f जोड़े
इसे सेव करें
हम देख सकते हैं अब यहाँ error नहीं है
control f11 के साथ run करें
जैसे कि हम देख सकते हैं दशमलव value संचित हो गई है और value printed हो गई है
अब variable distance की value बदलें
दशमलव बिंदु के बाद कई संख्याएँ जोडें जैसे कि दिखाया गया है
इसे सेव और run करें
हम देखते हैं कि जो संचित हुआ है output उससे भिन्न है
ऐसा होता है क्योंकि यहाँ floating प्वाईंट संख्या की स्पष्टता की एक सीमा होती है
यह निकटतम संभव संख्या की समाप्ति है यदि यह सही से संचित नहीं किया जा सकता है
अब variables के लिए नामकरण नियम को देखें
name से पहले संख्या 2 जोड़ें
हम देखते हैं कि यहाँ एक syntax error है
यह इसलिए क्योंकि एक variable का name alphabet या underscore के साथ शुरु होना चाहिए
लेकिन सामान्यतः underscore का उपयोग variable के name को शुरु करने के लिए नहीं किया जाता है
add variable name के अंत में संख्या जोडें
हम देखते हैं कि यहाँ कोई error नहीं है
variable के name में digits हो सकती हैं लेकिन शुरुआत में नहीं
add name के बीच में एक underscore जोडें
हम देखते हैं कि यहाँ कोई error नहीं है
जिसका अर्थ है कि underscore variable name में हो सकता है
लेकिन variable name में कोई भी any पंगक्चूऐशन syntax error या any errors देता है
इस प्रकार आप java में numerical data संचित करते हैं
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
इस tutorial में हमनें विभिन्न प्रकार के numerical डेटाटाइप के बारे में सीखा
और numerical data को कैसे संचित करते हैं
और हमनें variable नामकरण नियम को भी सीखा
इस tutorial के लिए नियत कार्य के रुप में
अन्य numerical डेटाटाइप के बारे में पढें और
देखें कि वे int और float से किस प्रकार भिन्न है
java tutorials निम्न link पर उपलब्ध हैं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
यह spoken tutorial को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करने और देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी details हैं अधिक जानकारी के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद